कुछ हरे पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ कार खड़ी हुई दो दिखाई दे रही है।

एक थाली रखी हुई दिखाई दे रही हैं थाली में दो कटोरी रखी हुई दिखाई दे रही है एक टोकरी रखी हुई दिखाई दे रही है।